यहाँ पर लगता है कि कुछ मार्केट टाइप बिछा हुआ है जहाँ कुछ हेलमेट मिल रहे है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं दो होल्डिंग लगे हुए हैं और यहाँ पर एक येलो होल्डिंग हैं और एक ब्लू हैं और यहाँ पर बड़े से पेड़ भी हैं और यहाँ एक दीवार दिख रही हैं।

यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर काफी पेड़ लगे हैं और यहाँ काफी हरियाली है यहाँ छोटे-छोटे पौधे भी लगे हैं और यहाँ एक बड़ा सा पेड़ भी है और यहाँ धूप भी आ रही हैं।

और यहाँ से भी घर दिख रहे है और यहाँ दिन का समय है।

यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है।

यहाँ पेड़ भी बना है और यहाँ पे जो रिसेप्शन है ये ब्लैक और व्हाइट इसके डेस्क बना है।